और सामने की ओर दो बाइक खड़ी हुई हैं जिसके बीच में एक स्कूटी खड़ी है।

गेट के बाहर हरे नीले पीले येलो रेड व्हाइट कलर के बैलून टंगे हुए हैं।

लेफ्ट साइड एक काला कुर्ता पहने इंसान खड़ा हैं।

यहां पे केक मिल रहा है।

सामने की तरफ एक औरत बैठी हुई है।

आसपास में खाने की दुकानें हुई लगी हुईं है।